लाइट भी लगा हुआ है।

एक गमले में पौधे लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक बुलट दिखाई दे रहे जहां पे बहुत सारा लाइटें लगे हुए है।

जिसका कलर रेड ब्लू और--

और बांस भी रखा हुआ है।

और एक फूल भी दिखाई दे रही है।

सामने कुछ बच्चे खड़े हैं और बेंच पर मेरी गोल्ड बिस्कुट रखा हुआ है।

इस दृश्य में एक मस्जिद का चित्र दिखाई दे रहे हैं जहां पे गुंबद बने हुए हैं।

काला कलर का शीशा का गेड लगे हुए हैं।

खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।

कार्टून भी रखा हुआ है।

इस दृश्य में एक फील्ड का चित्र दिखाई दे रहे हैं।

और बाहर में रोड भी दिखाई दे रही है।

दृश्य में एक होटल का बाहर का चित्र दिखाई दे रहे जहां पे आकाशदीप लिखे हुए हैं।

व्यक्तिये भी दिखाई दे रहे हैं।

ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।

जहां पर सदर अस्पताल रांची लिखा हुआ है।

इस दृश्य में मस्जिद का अंदर का चित्र दिखाया गया है।

इस हॉस्पिटल के बाहर बहोत सारे का बाइक साइकल लगे हुए है।

और व्यक्ति लोग भी बाइक से पार हो रहे हैं।